आस-पास हमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी देख पा रहे हैं। ये छाया हमें पुल पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बॉउंड्री भी हमें नजर आ रहे हैं।

वहीं हमें एक महिला इन्हें योगा सिखाती हुई भी दिखाय दे रही है। नीचे पर कई सारे नीले और लाल रंग के कारपेट बिछाये गए हैं। इनमें हम बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी देख पा रहे हैं। यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

रास्ते पर चलते हुए हमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं| रास्ते के दोनों तरफ हमें बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है| एक ग्राउंड में हमें कई सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें बहुत सारी बकरियां दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है जैसे की ये एक फार्म का दृश्य है | हमें यहाँ पर ये बकरियां कुछ चारा खाती हुई दिखाई दे रही

जो देखने में हमें एक भवन का लग रहा है| जहाँ पर हम कई सारे लाइन से लगी हुई चेयर्स देख पा रहे हैं| चेयर हमें सफ़ेद रंग के नज़र आ रहे हैं।

इस पर हमें कुछ चेरी किशमिश काजू भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर हमें कुछ चम्मच भी दिखाई दे रहे हैं यह बड़ा लजीज लग रहा है।